यहां पर ग्राउंड दिखाई दे रही है ग्राउंड पर घास दिखाई दे रहा है और--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

दीवार पे बिजली की तार दिखाई दे रही है।

यहां की छत पर बहोत सारी लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं।

बाहर एक स्कूटर भी दिखाई दे रहा है।

और मोबाइल नंबर नाइन नाइन एट एट फोर सिक्स सिक्स वन फाइव टू लिखा हुआ है ये एक--

यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग का बैग पहेना है।

और यहां पर टेबल पर सफेद रंग के कपड़ा भी रखा हुआ है।

और काले रंग की पाइप भी दिखाइ दे रही है।

एक वायर भी दिखाई दे रही है।

यहां पर दीवार दिखाई दे रही है।

व्हील लगे हुए हैं और बहुत सारे टायर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

डेंटल क्लिनिक है जिसके ऊपर ब्राइट स्माइल लिखा हुआ है।